चित्र मे देख सकते है वडा पाव का बॅनर लगाया गया है पीला कलर का आसमान है पेड़ है और शटर डाला गया--

चित्र मे देख सकते है की एक स्टेचू है और एक फ़त्त बदसा फत्थर है जो स्टेचू स्पो है और नीला आसमान है।

इस चित्र मे आप देख सकते है कि एक लड़का अपने दोनों हाथ और दोनों पैर मे जूता पहनते हुए--

वे दिखाई दे रहे है और नीला आसमान है और पेड़ दिखाई दे रहे है और घर भी दिखाई दे रहे।

अ ट्रेन पटरी पर जा रही है और अ--